के अंदर भी कुछ लोग हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो में खाली ग्राउंड है साथ ही ग्राउंड में एक प्राइवेट जेट है।

आधे टेबल पे दो छोटे छोटे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं।

के साइड मे दो ब्लू कलर की चेयर रखी हुई है।

उस टेबल में कुछ बुक्स और फाइल रखी हुई है।

उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बिल्डिंग का कलर व्हाइट और रेड कलर का है जिसमें बहुत सारी विंडो और डोर है।

बहुत सारे लोग सब्जी ले रहे हैं।

फ्लावर्स का कलर येलो रेड पर्पल पिक ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं।

इस फोटो में मस्जिद है इस मस्जिद के वॉल का कलर व्हाइट कलर का है।

इस फोटो में एक मस्जिद है इस मस्जिद के फर्श में बहुत सारे मुसल्ले बिछाए गए हैं।

इस मस्जिद के रैक के नीचे कुछ डब्बे रखें हुए हैं जिनमें कुरान रखी हुई है।

इसके बाहर बहोत सारे छोटे छोटे बच्चों की साइकल रखी हुई है।

इसके बाहर दो लोग हैं और एक वाइट कलर की कार है।

साथ ही एक मंदिर है और उसके साइड में एक बड़ा सा पेड़ है और कुछ लोग है।